यहां पर एक बड़ा-सा मकान दिखाई दे रहा है दरअसल यह उतना बड़ा भी नहीं है और यह नील रंग का देखा जा सकता है नीले रंग की दरवाजी लगी है इसमें।

एंड सामने की तरफ में एक सीधी रोड जाती हुई नजर आ रही है दूसरी तरफ में कुछ यहाँ पे गेट दिखाई दे रही हैं उपर लाइट की तारे लगी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की तरफ में बहुत सारी ममिट्टीयों को भी देखा जा सकता है उपर में काला आकाश दिखाई दे रहा है सामने एक बड़ा सा खम्बा दिखाई --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

अगल-बगल में बोहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एंड इसकी दूसरी तरफ में बोहोत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

नजर आ रहे हैं जो देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति को देखा जा सकता है जो कि यहाँ पर खड़ा है और अगल-बगल में भी कुछ लोगों को देखा जा सकता हैं।

ऊपर राती ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है जिसपे सफ़ेद बादल --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के अंदर में एक मूर्ति को भी देखा जा सकता है।

यहाँ पर एक सामने में एक टी.वी. जैसा कुछ देखा जा सकता है अगल-बगल में बोहोत सारे --